एक बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है जहा कुछ लोगो के द्वारा फूटबॉल खेली जा रही है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है स्पीकर दिखाई दे रहा है।

कुछ बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है बाउन्ड्री दिखाई दे रही है एक छोटासा गार्डन दिखाई दे रहा है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है बिजली की वायरिंग्स दिखाई दे रही है।

एक शॉप दिखाई दे रही है जिसका नाम हाईलँडर ग्लोरी है।

एक चर्च दिखाई दे रहा है कुछ लोग दिखाई दे रहे है दरवाजे दिखाई दे रहे--

कुर्सिया दिखाई दे रही है पर्दे दिखाई दे रहे है।

एक बड़ा सा चर्च दिखाई दे रहा है कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है वायर्स दिखाई दे रहे है कुछ गड़िया दिखाई दे रही है।

एक क्लीनिक दिखाई दे रहा है जिसका नाम नैचरल स्किन हैयर अँड फॅमिली क्लीनिक है बाहर कुछ लोग दिखाई दे रहे है एक मेडिकल दुकान दिखाई दे रहा है और खुर्सिया दिखाई दे रही है।

एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है खिड्किया दिखाई दे रही है कुछ लोग दिखाई दे रहे है डेक्स बेंच दिखाई दे रहा है ऊपर पंके लगे हुए है।

पीछे घर दिखाई दे रहा है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है और बिजली की तार दिखाई दे रहा है कुछ लोग दिखाई दे रहे है।

एक बड़ी सी कॉफी शॉप दिखाई दे रहा है जिसका नाम कैफे कॉफी डे है।

बाहर पेड़ पौधे दिखाई दे रहैं हैं दरवाजा दिखाई दे रहा है कुछ गड़िया दिखाई दे रही हैं लोहे की रेलिंग्स दिखाई दे रही हैं पेड़ पौधे पर लाइट लगे हुए हैं।

बहुत सारे चेयर्स दिखाई दे रहे है कुछ लोग दिखाई दे रहे है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है खंबे दिखाई दे रहे है।